और उसने हैडफ़ोन जो वायरलेस ब्लूटूथ वाले हैं ।

जो ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और ऊपर जैकेट पहनी हुई है ।

एक सड़क की इमेज है।

हमरे सामने जो इमेज है --

हमरे सामने जो इमेज है उस इमेज के अंदर --

जो बहुत खूबसूरत है और उसके अंदर बहुत सजावट की गई है।

हमरे सामने जो इमेज है।

हमरे सामने जो इमेज नज़र आ रही है उस इमेज के अंदर--

बाइक का भी पीछे की तरफ नजर आ रहा है।

और उस दुकान के ऊपर की तरफ कुछ पोस्टर लगा हुआ है ।

बैठें हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा हैं।

सीमेंट के भरने के तैयारी कर रहे हैं।

उस इमेज के अंदर एक तालाब है।

और उसके साइड में एक सफेद कलर की पोशाक पहने आदमी खड़ा हुआ है।

और उनमे जो बाइक का जो रंग है --